इ पानी का झड़ना गिर रहा है एक पुल है जो कि आदमी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऊपर का नजारा बहुत ही सुंदर है अगल-बगल में पेड़ हैं।

और नीचे पानी फोएरा लेखा बरस रहा है।

ये एक मंदिर का सीन है जोकि मंदिर में बहुत भारी भीड़ लगी हुई है।

और कुछ लोग जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं।

और इसको इजेक्शन पड़ रहा है।

दोनों के गर्दन में आला है।

ये किसी चीज का दुकान दिखाई दे रहा है जो कि सामान भरा पड़ा है।

और ये लग रहा है किसी चीज का प्रोग्राम चल रहा है।

जोकि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही लग रहा है।

और कुछ लोग मास्क लगा कर के खड़े हुए हैं।

वाटर पार्क है जोकि यहाँ पे कुछ लोग नहाने के लिए--

यहाँ लग रहा है कि कुछ चीज का प्रोग्राम हो रहा है जोकि बहुत सारे लड़कियां और लेडीज जेंट्स भी आए हुए हैं।

और हाथ में कुछ लिए हुए हैं।

बगल में दो रनिंग का मशीन भी है और यहाँ पे।

यहाँ पे दो कुर्सी रखा हुआ है और एक ऊपर मशीन रखा हुआ है।

और कुछ लोग सामान खरीद कर के जा रहे हैं ये एक इमर--

और ये पेट्रोल टंकी में लाइट भी लगा हुआ है।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

एक गलियाड़ी है जोकि इसमें कुछ का करखाना भी है और बगल में घर भी है।

है बढ़ रहा है और नीचे में बाइक जा रही है आ रही है साइकिल से कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं।

और यहां पे बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं अलग-अलग तरह के।

जोकि एक जेंस बैठा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे बैलून से सजाया गया है डिजाइन से।

जिम जिम का उद्घाटन हुआ है यहां पर बहुत सारे बैलून से सजाए गए हैं।

और यहां पे रनिंग के लिए ब अ बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं।

और यह रात का समय है लाइट बहुत ही चमचमा रहा है।

हाथ में कुछ-कुछ सामान लिए हुए हैं कोई ढोलक लिया है कोई हारमोनिया लिया है।

यह एक साड़ी का दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें चार साड़ी सड़िया करके रखा हुआ है और एक खोल करके दिखाया जा रहा है।

और एक घड़ी है जो कि उसमें साढ़े ग्यारह बज रहा है और कैलेंडर भी है नीचे का फर्स बहुत ही साफ है।

और एक रूम का चित्र है और इसके सामने दिखाई दे रहा है घर।

और ये एक क्लोनी का सीन है और ये दुकान ओपन है।

और बगल में बहुत सारे घर भी नजर आ रहे हैं एक रोड पर क--

और अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ भी हैं और--

एक लड़का आया हुआ है शादी में जो कि फोटो खींचवा रहा है कुछ लोग खाना खा कर के निकल गए हैं।

और यहाँ पे बहुत सारा लाइट भी है और यह एक--

जोकि बहुत ही खतरनाक गड्ढा है।

आगे एक शीशा का गेट है।

और एक आदमी देख रहा है।

यहाँ एक तालाब है जिसमें कुछ--

यह एक चकड़ी वाला झुलुआ है जिस पे अ लोग झूल रहे हैं।

गिर रहा है नीचे स्पेस में बहुत सारा घास है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे बाइक भी लगे हुए हैं।

और ऊपर का स्पेस बहुत ही बड़ा है और नीचे--

यह एक बैंक है कैनरा बैंक और--

अ पोस्टर है और यह बहुत अच्छा--

दो लड़का है जो कि पानी में खड़ा होकर के फोटो खींचवा रहा है और एक बगल में छोटी से नाव है।

और ये पानी बहुत एरिया में फैला हुआ है पीछे कुछ--

और एक केक का दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें से--

खुला हुआ गिटार है एक टेबल है नीचे।

दो-तीन टेबल है पीछे दीवार है दीवार पे छज्जा है वाइट पेंट किया--

यह किसी रोड पर का शांति नजारा है इसमें अगल-बगल में घर है।

और इसमें बैंक भी है पंजाब नेशनल बैंक और यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

और इसका दीवार बहुत बढ़िया लग रहा है नीचे का स्पेस भी बहुत अच्छा है।

करतार लिखा हुआ है आदित्य लिखा हुआ है यहाँ बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं।

ऊपर की ओर तार है बगल में घर है।